मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं
इस मन की बात के लिये आने वाले सुझाव फोन कॉल की संख्या सामान्य रूप से कई गुणा ज्यादा है
कई सारे विषयों को अपने अन्दर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुँची हैं
मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादासेज्यादा पढ़ पाऊँ सुन पाऊँ
आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिनपर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है
मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बाटूँ
भारत की कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई सही मायने में पियोपल ड्राइवेन है
भारत में कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई जनता लड़ रही है आप लड़ रहे हैं जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है
भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है ग़रीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है
उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है
और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश देश का हर नागरिक जनजन इस लड़ाई का सिपाही है लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है
आप कहीं भी नज़र डालिये आपको एहसास हो जायेगा कि भारत की लड़ाई पियोपल ड्राइवेन है
जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है
भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी उसके तौरतरीकों की चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि भारत की यह पियोपल ड्राइवेन लड़ाई इसकी ज़रुर चर्चा होगी
पूरे देश में गलीमोहल्लों में जगहजगह पर आज लोग एकदूसरे की सहायता के लिए आगे आये हैं
ग़रीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो लॉकडाउन का पालन हो अस्पतालों की व्यवस्था हो मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो आज पूरा देश एक लक्ष्य एक दिशा साथसाथ चल रहा है
ताली थाली दीया मोमबत्ती इन सारी चीज़ों ने जो भावनाओं को जन्म दिया
जिस ज़ज्बे से देशवासियों ने कुछनकुछ करने की ठान ली हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है
शहर हो या गाँव ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिये आतुर है
हमारे किसान भाईबहनों को ही देखिये एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिनरात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा ना सोये
हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है
कोई किराया माफ़ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है
कोई खेत की सारी सब्जियाँ दान दे रहा है तो कोई हर रोज़ सैकड़ों ग़रीबों को मुफ़्त भोजन करा रहा है
कोई मास्क बना रहा है कहीं हमारे मजदूर भाईबहन क्वारंटाइन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाईपुताई कर रहे हैं
दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर ह्रदय के किसी कोने में जो ये उमड़ताघुमड़ता भाव है ना वही वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पियोपल ड्राइवेन बना रहा है और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिज़ाज बना है निरंतर मज़बूत होता रहा है
चाहे करोड़ों लोगों का गैस सबसिडी छोड़ना हो लाखों सीनियर सिटिजेन का रेलवे सबसिडी छोड़ना हो स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो टॉयलेट बनाने हो अनगिनत बातें ऐसी हैं
इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन एक मजबूत धागे से पिरो दिया है
एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है
मेरे प्यारे देशवासियो
मैं पूरी नम्रतापूर्वक बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूँ
आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रूचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लैटफार्म भी तैयार किया है
ये प्लैटफार्म है covidwarriorsgovin
मैं दोबारा बोलता हूँ covidwarriorsgovin
सरकार ने इस प्लैटफार्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एकदूसरे से जोड़ दिया है
बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से सवाकरोड़ लोग जुड़ चुके हैं
इनमें डॉक्टर नर्सेस से लेकर हमारी आशा अन्म बहनें हमारे एनसीसी एनएसएस के साथी अलगअलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स उन्होंने इस प्लैटफार्म को अपना प्लैटफार्म बना लिया है
ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहें हैं
आप भी covidwarriorsgovin से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं कोविड वारियर बन सकते हैं
हर मुश्किल हालात हर लड़ाई कुछनकुछ सबक देती है कुछनकुछ सिखा करके जाती है सीख देती है
कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है
इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है
हमारे बिजनेस हमारे दफ्तर हमारे शिक्षण संस्थान हमारा मेडिकल सेक्टर हर कोई तेज़ी से नये तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहें हैं
टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्तिथियों के मुताबिक कुछनकुछ नया निर्माण कर रहा है
देश जब एक टीम बन करके काम करता है तब क्या कुछ होता है ये हम अनुभव कर रहें हैं
आज केन्द्र सरकार हो राज्य सरकार हो इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं
हमारे एविएशन सेक्टर में काम कर रहे लोग हों रेलवे कर्मचारी हों ये दिनरात मेहनत कर रहें हैं ताकि देशवासियों को कमसेकम समस्या हो
आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाईयों को पहुँचाने के लिए लाइफलाइन उदन लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है
हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही तीन लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोनेकोने में आप तक पहुँचाया है
इसी तरह रेलवे के साथी लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहें हैं ताकि देश के आम लोगों को जरुरी वस्तुओं की कमी न हो
इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीबकरीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सेल ट्रेन चला रही है
इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहें हैं
हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वारियर ही हैं
प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज़ के तहत ग़रीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं
वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है
गरीबों को तीन महीने के मुफ़्त गैस सिलेंडर राशन जैसी सुविधायें भी दी जा रही हैं
इन सब कामों में सरकार के अलगअलग विभागों के लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिनरात काम कर रहे हैं
और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूँगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं
स्थानीय प्रशासन राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं उसकी कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है
उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है
मेरे प्यारे देशवासियो
देशभर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है
इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुचाने वालों के खिलाफ़ बेहद सख्त़ सज़ा का प्रावधान किया गया है
हमारे डॉक्टर नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोनामुक्त बनाने में दिनरात जुटे हुए हैंउनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत ज़रुरी था
मेरे प्यारे देशवासियों
हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ़ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को समाज को हमारे आपपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नज़रिए से देखने का अवसर भी मिला है
समाज के नज़रिये में भी व्यापक बदलाव आया है
आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की अहमियत का हमें आभास हो रहा है
हमारे घरों में काम करने वाले लोग हों हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हों पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हों इन सबकी कितनी बड़ी भूमिका है हमें यह अनुभव हो रहा है
इसी तरह ज़रुरी सेवाओं की डिलिवरी करने वाले लोग मंडियों में काम करने वाले हमारे मज़दूर भाईबहन हमारे आसपड़ोस के ऑटोचालक रिक्शाचालक आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है
आज कल सोशल मीडिया में हम सबलोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ़ याद कर रहे है उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं
आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरे आ रही हैं कि लोग सफाईकर्मियों पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं
पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे
डॉक्टर हों सफाईकर्मी हों अन्य सेवा करने वाले लोग हों इतना ही नहीं हमारी पुलिसव्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफ़ी बदलाव हुआ है
पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नज़र नहीं आता था
हमारे पुलिसकर्मी आज ग़रीबों ज़रुरतमंदो को खाना पंहुचा रहे हैं दवा पंहुचा रहे हैं
जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है इससे पोलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभरकर के आया है हमारे मन को झकझोर दिया है हमारे दिल को छू लिया है
एक ऐसा अवसर है जिसमें आमलोग पुलिस से भावात्मक तरीक़े से जुड़ रहे हैं
हमारे पुलिसकर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सबने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है
हम अक्सर सुनते हैं प्रकृति विकृति और संस्कृति इन शब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा
अगर मानव प्रकृति की चर्चा करें तो ये मेरा है मैं इसका उपयोग करता हूँ इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है
किसी को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होता
इसे हम प्रकृति कह सकते हैं
लेकिन जो मेरा नहीं है जिस पर मेरा हक़ नहीं है उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ उसे छीनकर उपयोग में लाता हूँ तब हम इसे विकृति कह सकते हैं
इन दोनों से परे प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारितमन सोचता है या व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नज़र आती है
जब कोई अपने हक़ की चीज़ अपनी मेहनत से कमाई चीज़ अपने लिए ज़रूरी चीज़ कम हो या अधिक इसकी परवाह किये बिना किसी व्यक्ति की ज़रूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक़ के हिस्से को बाँट करके किसी दूसरे की ज़रुरत पूरी करता है वही तो संस्कृति है
साथियो जब कसौटी का काल होता है तब इन गुणों का परीक्षण होता है
आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारो के अनुरूप हमारी सोच के अनुरूप हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फ़ैसले लिए हैं
संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी समृद्ध देशों के लिए भी दवाईयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है
एक ऐसा समय है की अगर भारत दुनिया को दवाईयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता
हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है
लेकिन साथियो भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया
भारत ने अपने संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया
हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही लेकिन दुनियाभर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरापूरा ध्यान दिया
हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुँचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया
आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फ़ोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार जरुर व्यक्त करते है
जब वो लोग कहते हैं थांक यू इंडिया थांक यू पियोपल ओएफ इंडिया तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है
इसी तरह इस समय दुनियाभर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्टभाव से देख रहे हैं
सोशल मीडिया पर देखिये हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है
कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरुर कर रहे होंगे
गर्म पानी काढ़ा और जो अन्य दिशानिर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किये हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेगें तो आपको बहुत लाभ होगा
वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियाँ और समृद्ध परम्परा को पहचानने से इंकार कर देते हैं
लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है
हमारा ही फॉर्मुला हमें सिखाता है तो हम उसे हाथोंहाथ ले लेते हैं
संभवत इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है
इस वजह से कभीकभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है
हमारा आत्मविश्वास कम नज़र आता है
इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को हमारे पारम्परिक सिद्दांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं उसे हीन समझने लगते हैं
भारत की युवापीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा
जैसे विश्व ने योग को सहर्ष स्वीकार किया है वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्दांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा
हाँ इसके लिए युवापीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा कुछ करके दिखाना होगा
वैसे covid19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके हमारी जीवनशैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं
आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलगअलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागृत किया है
जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढ़ककर रखना
कोरोना की वजह से बदलते हुए हालत में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है
वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखें लेकिन अब हो यही रहा है
हाँ इसका ये मतलब नहीं है जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं
और जब मैं मास्क की बात करता हूँ तो मुझे पुरानी बात याद आती हैं
आप सबको भी याद होगा
एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके होते थे कि वहाँ अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आसपड़ोस के लोग उसको जरुर पूछते थे क्या घर में कोई बीमार है यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है ऐसी एक धारणा बनी हुई थी
हालाँकि समय बदला और ये धारणा भी बदली
वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है
आप देखियेगा मास्क अब सभ्यसमाज का प्रतीक बन जायेगा
अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा और मेरा तो सिम्पल सुझाव रहता है गमछा मुहँ ढ़कना है
हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आयी है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं
यहाँवहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था
ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था
वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहें हैं लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशाहमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए
कहते भी हैं कि बेटर लते थान never
तो देर भले ही हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए
ये बातें जहाँ बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी
मेरे प्यारे देशवासियो
ये सुखद संयोग ही है कि आज जब आपसे मैं मन की बात कर रहा हूँ तो अक्षयतृतीया का पवित्र पर्व भी है
साथियो क्षय का अर्थ होता है विनाश लेकिन जो कभी नष्ट नहीं हो जो कभी समाप्त नहीं हो वो अक्षय है
अपने घरों में हम सब इस पर्व को हर साल मनाते हैं लेकिन इस साल हमारे लिए इसका विशेष महत्व है
आज के कठिन समय में यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा हमारी भावना अक्षय है
यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ रास्ता रोकें चाहे कितनी भी आपदाएं आएं चाहे कितनी भी बीमारियोँ का सामना करना पड़े इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है
माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्रीकृष्ण और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अक्षयपात्र मिला था
अक्षयपात्र यानि एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नही होता है
हमारे अन्नदाता किसान हर परिस्थिति में देश के लिए हम सब के लिए इसी भावना से परिश्रम करते हैं
इन्हीं के परिश्रम से आज हम सबके लिए गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्नभण्डार है
इस अक्षयतृतीया पर हमें अपने पर्यावरण जंगल नदियाँ और पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती अक्षय रहे
क्या आप जानते हैं कि अक्षयतृतीया का यह पर्व दान की शक्ति यानि पॉवर ओएफ गिविंग का भी एक अवसर होता है हम हृदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं वास्तव में महत्व उसी का होता है
यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं
संकट के इस दौर में हमारा छोटासा प्रयास हमारे आसपास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्बल बन सकता है
साथियो जैन परंपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण दिन रहा है
ऐसे में जैन समाज इसे एक पर्व के रूप में मनाता है और इसलिए यह समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना पसन्द करते हैं
चूँकि आज कुछ नया शुरू करने का दिन है तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धरती को अक्षय और अविनाशी बनाने का संकल्प ले सकते हैं साथियो आज भगवान बसवेश्वर जी की भी जयन्ती है
ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भगवान बसवेश्वर की स्मृतियाँ और उनके सन्देश से बारबार जुड़ने का सीखने का अवसर मिला है
देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयन्ती पर बहुतबहुत शुभकामनाएँ
रमज़ान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है
जब पिछली बार रमज़ान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमज़ान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा
लेकिन अब जब पूरे विश्व में यह मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमज़ान को संयम सद्भावना संवेदनशीलता और सेवाभाव का प्रतीक बनाएं
इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनायें
मुझे विश्वास है कि रमज़ान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ़ चल रही इस लड़ाई को हम और मज़बूत करेंगे
सड़कों पर बाज़ारों में मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है
मैं आज उन सभी कम्यूनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जो दो गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं
वाक़ई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनियाभर में त्योहारों को मनाने का स्वरुप ही बदल दिया है रंगरूप बदल दिए हैं
अभी पिछले दिनों ही हमारे यहाँ भी बिहू बैसाखी पुथंडू विशू ओड़िया न्यू यियर ऐसे अनेक त्योहार आये
हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और समाज के प्रति शुभचिंतन के साथ त्योहारों को मनाया
आमतौर पर वे इन त्योहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे
घर के बाहर निकलकर अपनी ख़ुशी साझा करते थे
लेकिन इस बार हर किसी नें संयम बरता
लॉकडाउन के नियमों का पालन किया
हमने देखा है कि इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टरEaster भी घर पर ही मनाया है
अपने समाज अपने देश के प्रति ये ज़िम्मेदारी निभाना आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है
तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे
कोरोना जैसी वैश्विकमहामारी को परास्त कर पाएँगे
मेरे प्यारे देशवासियों
इस वैश्विकमहामारी के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते और आप सब भी मेरे ही परिवारजन हैं तब कुछ संकेत करनाकुछ सुझाव देना यह मेरा दायित्व भी बनता है
मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूँगा हम कतई अतिआत्मविश्वास में न फंस जाएं हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में हमारे गाँव में हमारी गली में हमारे दफ़्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है इसलिए अब पहुँचने वाला नहीं है
देखियेऐसी ग़लती कभी मत पालना
दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है
और हमारे यहाँ तो बारबार कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी
याद रखिये हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है
हमारे पूर्वजों ने कहा है
अग्नि शेषम् ऋण शेषम्
शेषम् तथैवच
पुनः पुनः प्रवर्धेत
तस्मात् शेषम् न कारयेत
अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गयी आग कर्ज़ और बीमारी मौक़ा पाते ही दोबारा बढ़कर ख़तरनाक हो जाती हैं
इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है
इसलिए अतिउत्साह में स्थानीयस्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए
इसका हमेशाहमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा
और मैं फिर एक बार कहूँगा दो गज दूरी बनाए रखिये खुद को स्वस्थ रखिये दो गज दूरी बहुत है ज़रूरी
आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ
अगली मन की बात के समय जब मिलें तब इस वैश्विकमहामारी से कुछ मुक्ति की ख़बरें दुनिया भर से आएं मानवजात इन मुसीबतों से बाहर आए इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुतबहुत धन्यवाद